इस चित्र में बादल का मौसम नजर आ रहा है और यहां पर एक छोटा सा ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

चित्र में एक जंगल दिखाई दे रहा है और जंगल में बहुत सारा हरे भरे पत्ते भी नजर आ रहे हैं ।

इस चित्र में बहुत सारा बड़े बड़े हरे हरे पत्ते भी नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में पूरा बादल का मौसम होता हुआ दिखाई दे रहा है ।

यहां पर ये बहुत सारा तार सब भी नजर आ रहा है।

यहाँ पर एक कार रिपेयर भी होता हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर एक ऑरेंज कलर का बहुत बड़ा मशीन भी दिखाई दे रहा है ।

इस चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है और यहा पर ये लाल कारपेट बिछा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर यह दो मूर्ति स्वागत करते हुए दिखाई दे रही है।

यहां पर ही जिलेट गार्ड का ब्लेड भी नजर आ रहा है।

यहां पर ही बहुत सारा काड भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

या पर ही कुर्सी रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहुत सारा पुरुष और महिला लोहे का कुर्सी में बैठे हुए दिखाई दे रही है।

यहां पर ये बहुत बड़ा आईना लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक सुपर मार्केट का दुकान दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक टी_वी लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है और यहां पर ही बहुत सारा सी_सी_टी_वी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक होटल दिखाई दे रहा है और यहां पर यह बहुत सारा कुर्सी और टेबल भी दिखाई दे रहा है ।

यहां पर एक ऑटो जाता हुआ भी नजर आ रहा है और यहां पर ही बहुत सारा पुरुष रोड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है।